और पानी में के लिए बच्चा आदमियों के लिए उ द दिखाई दे रहा है।

यह एक पहाड़ है जो की बिच में है घर भोत बनाई दे रहा --

यह एक उ पुल बना है जो की पानी के ऊपर रोड बना है।